और ये अंदर बाहर जाने का रास्ता है और ये शाम का टाईम है और अँधेरा दिख रहा है और एक छत पे लाईटस लगी है।

ये देखिये गायस इस इमेज में हम देख रहे है की यह छोटी सी मंदिर है और ये अगल- बगल इसके पेड़--

ये देखिये ये एक बहुत ही सुन्दर सा बना हुआ है यहाँ उठने बैठने की जगह है और आस-पास हरियाली है।

देखिये गाइस इस इमेज में हमे दिखाई दे रहा है की ये गेराज है टेम्पो सही हो रहा है एक आदमी टेम्पू सही कर रहा है और एक आदमी खड़ा हैजो देख रहा है टेम्पू को।

और ये काफी सुँदर दिख रही है हे यह डक--

भीड़ भी है बहुत और यहा घर भि नजर आ रहा है दुकाने भि लगी हुई है।

और एक रेड कलर का दिवार भी है।

यह देखिये एक आदमी ने फोटो खींची है बहार साइड से आ रही है।